यहाँ बहार उसके म-म गमले में पौधे लगाए हुए हैं छोटे-छोटे और यहाँ पे बाइक ढेर सारे खड़े हैं जो बगल में --

और इन और पीछे पीछे दीवार में सजा हुआ बैलून है जो उसमे दो रस्सी भी लटकाया हुआ है।

और बाहर को लाइट है जो येलो कलर का है बड़ा-बड़ा।

गोले गोले बुक से सजाये हुये हैं अलमारी।

लगे हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां एक दुकान है जो छोटा-मोटा दुकान लग रहा है और यहां पर ढेर सारे कुरकुरे चिप्स ये सब टांगे हुए है और --